ये बोहोत ही शानदार डैम बना हुआ है यहा पे नदी के ऊपर से पुल है ये जो क्या बोलते है हा वो है यार क्या बोलते है मुझे नाम नहीं आ रहा।

उसके अंदर ए सी लगी हुई है शायद मे कन्फर्म कह सकता हु ये एसबी आई का ए_टी_एम है क्योकि इसपे लिखा हुआ है यूनो एस बी आई तो मे कन्फर्म --

इस बंदे की शानदार सेल्फ़ी है बोहोत ही शानदार एण्ड यूनक और इसके पीछे नजारा देखो बोहोत ही शांत वातावरण है ये।